ये कोई पहाड़ का रास्ता है ये कोई मारुती गाड़ी है।

ये राडें भी लगी है कुर्सी भी पड़ी हैं।

ये कोई मम आदमी खड़ा खड़े है।

ये कोई मम रास्ता है ये ई ईटों से बिछी है।

ये बहोत बड़ा फील्ड है।

अब खम्बे भी लगे हैं मक भी लगी है।

पीछे भी और कलर के पर्दे भी हैं।

और प्रिंट भी है पीले कलर की।

बहोत सारी हरी-हरी बहोत सुन्दर गोभी भी है।

ये होस्टल है एक --

इ पानी भी चल रहा है।

और बहुत गे बहुत बड़ा गेट है। आस-पास आस भाइट कलर की पेंटिंग है।

दूर से दिखाई दे रहा है अभी कोई भाग रहा है।

पांच पोस्टर भी टगा है।

यह कोई खड़ा है।

इ टंग कुछ लु कुछ टंगी भी है। डब्बे में रखे हैं।

फ्राकों भी हैं।

और मम टंकी की मम्म पेंटिंग भी है आसमानी कलर की --

और इहाँ पेंटिंग भी है।

और गेट पर म्म खम्बे पर म्म मूर्ति भी बनी है।